यह एक बहुत ही फेमस और बड़ा म्यूजियम है इस म्यूजियम में बहुत प्रकार के पुरानिक धर्म के मूर्तियां देखने मिल जातें हैं जिसमें यह एक मूर्ति बौद्ध धर्म का है।

जहाँ पर लोग अपनी छुट्टियों को मानाने के लिए आतें हैं और इस गार्डन में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस गार्डन के बगल में खूब खूबसूरत बागान भी --

यह एक नदी है जो बहुत ही बड़ा नदी है और यह नदी पहाड़ों के बीचों से निकलती है और इस नदी दो भागों में बटी हुई है और यह नदी देखने में बहुत ही खूबसूरत है ।

यह एक घर है जिसमें पुरानिक संस्कृति को दर्शाई गई है और जिसमें छः लोग दिखाई जा रहे है जो एक ढोलक बजा रहे है एक हारमोनिया बजा रही है एक करताल बजा रही है।